ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई फर्नीचर अरेंज किया गया हो और यहाँ पे एक अ दो और तीन सीटर वाला सोफा है जो की अ--

यहाँ पे पेड़ पौधे है और एक आदमी उनपे ना कुछ दाल रहा है ऐसे लग रहा है जैसे कोई फर्टीलिज़ेर्स या मेनिक्योर्स डालते हैं पूरे झाड़ को लिए और अच्छा गारो होने के--

जे अ सारे में ऐसे लग रहें है जेसे कोई अभी फिशिंग की है इस म मछियो का--

ये एक अ दुकान है जो की टायर की दूकान है और इस दुकान का नाम है सीएट फील्स स्मार्ट टायर कर के।

जो कि ऐसे लग रहे है की जैसे सूखे हुए पेड़ पौधे की ब्रांचेज रहती है वैसे लग रहे हैं।

ये एक दूकान लग रहा हैं की जहां हमें सारे स्टेशनरी के चीज़े मिलती है और यहां पे बहोत सारी अ लाल किताबे दिख रही है जो की पढने में बहुत अच्छी लगती है।

ये एक पार्क के जैसा लग रहा है जहाँ बीच में पूरे पत्थर जैसे है पत्थर का सड़क है और आसपास जो हरियाली है वो--

हरे रंग की है और यहाँ पे बोहोत सारे पोल और स्ट्रीट लाईटस भी है।

ये कोई पार्क के जैसा लग रहा हैं जहाँ के बोहोत ग्रीनरी है और हरे पेड़ पौधे लग रहे है और यहाँ कुछ लोग ऐसा लग रहा है की जैसे वोकिंग करके टाइम स्पेंड कर रहे हो।

प्यारा द्रश्य है और उसके साईंड में पूरा अ ब्राउन कलर की मड हैं।

ये दृश्य है यहा सारे हरियाली हैं और बीच एक मोटर साइकल खड़ी हुई है।

और पास में उसके बाजू में हेल्मेंट भी है और ऐसे लग रहा हैं जेसे कोई पार्क करके कहीं घुमने गया --

यह एक कीहोल जेसा दिख रह है और कीहोल मेसे एक अच्--